जाल है हरा भरा खेत है और इसके ऊपर घूम रहे हैं। एक लड़के के पट्टे पे है।

बाहर एक स्कूटी खड़ी है। शीशे का शोरूम दिख है।